ऊपर वाइट कलर का और ब्लू कलर का एक गुम्बद-सा है और आसपास दीवाले है अलग - अलग लाइट--

यहाँ पर शाम का वक्त है दो आदमी खड़े हुए हैं दो आदमी खड़े हुए हैं जिसका जिन्होंने अलग-अलग तरह के कप --

एक छोटी छोटा-सा पानी का कुंड है एक बाइक है ब्लैक कलर की जिसमे दो मिरर लगे हुए है एक छोटा-सा वहाँ पे जानवर है।

यह मंदिर है जो कि सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है जिसमे बोहत सारे सफ़ेद कलर के खम्भे है। जिसमे लाल कलर के धागे है ऊपर आसमान है।

यह एक खुला हुआ मैदान है जिसमें अ-अ-अ काफी सारी हरी-हरी घांस उगी हुई है काफी सारे पेड़-पौधे है एक बाउंड्री है।

जिन्होंने रेड कलर की शर्ट और अ जीन्स ब्लू कलर का पहना हुआ है। बाहर एक दुकान के बाहर एक छोटा-सा नीले कलर का डस्टबिन रखा हुआ है।

यहाँ पर एक आदमी है जिसने येलो कलर की शर्ट पहनी है उसके पीछे एक एल.सी.डी. है।